पत्थर का लकड़ियां लगी हुई है जो की बल्लियां मचान बंधी हुई दिख रही हैं गाड़ी दिख रही है बाईक जो की बहुत ही प्यारी लग रही है बहुत ही सुन्दर लग रही है।

जेसा की हम देख सकते हे सामने हमको एक ईशा मसिजी की मूर्ति दिख रही है जो की बहुत सुंदर दिख रही है ये सिम्बोल बना हुवा है जिसके ऊपर ये मूर्ति लटकी हुयी है उसके पीछे हमको गोल सर्कल दिख रहा हैं।

दिखता है विवो के फोन मिलते है केमरा एंड म्युसिक के फोन मिलते है पीछे हमको दीवार दिख रही परपल कलर की दिख रही है वाईट कलर की दीवार दिख रही है जोकि बहुत ही अच्छी बहुत ही सुन्दर दिख--

यह रोज कहते है इनको जो के बहुत ही अच्छे दिखते है लाल कलर के दिख रहे है जो की बहुत सुन्दर दिख रहे है बहुत ही प्यारे रहे है और बहुत ही अच्छे लग रहे है नीचे हमको पानी दिख रहा है।